एक लड़का खड़ा है दुकान में और लड़का के फेस को ब्लर किया गया है।

और ऊपर बहोत सारे बरतनें और होकिस के बॉक्सेस रखे हुए हैं।

तीन स्टैंड फैन दिखाई दे रहे है।

सामने में एक इलेक्ट्रिक पोल्स दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर भी बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

इस पिक्चर में गेमिंग रूम दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में एक सफेद रंग का घर दिख रहा है।

और ऊपर में पत्ते घर भी दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे में एक सफेद रंग का बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

और लड़के लोग बैग्स उठाकर गाड़ी में रखने के लिए दिखाई दे रहे है।

एक सफेद रंग का टेबल टाइप छोटा में कुछ रखा हुआ है।

और सफेद टेबल के ऊपर में बहोत सारे बॉटल्स भी रखे हुए हैं।

और एक फ्लावर पॉट दिख रहा है।

और पीछे में पेड़ के पत्ते दिख रहे है।

और सीलिंग में बहुत सारे एल_ई_डी की लाइट्स लगाए हुए हैं।

और एक लंबे सीढ़ी दिखाई दे रही है।